नमस्कार दोस्तों
netbeans ide के परिचय पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में मैं आपका netbeans के साथ बुनियादी शुरूवात से परिचय कराऊँगा
netbeans www netbeans org पर उपलब्ध free और open source integrated developement इन्वायरमेंट है
यह विभिन्न घटकों के एकीकरण के लिए अनुमति देता है
कई scripting languages और advanced text editors का समर्थन करता है
यह projects बनाने और डिजाइन बनाने के लिए gui भी प्रदान करता है तथा databases को भी समर्थन करता है
इस tutorial को समझने के लिए java programming language की बुनियादी जानकारी जरूरी है
इस tutorial में standard programming terminologies का उपयोग किया गया है
netbeans के साथ शुरूवात के लिए
मैं लिनक्स operating system उबुंटू version 1104 और netbeans ide version 711
का उपयोग कर रहा हूँ
इस tutorial में हम netbeans का संस्थापन देखेंगे
netbeans के interface के साथ अच्छी तरह से परिचित होंगे और
एक सेम्पल java project बनायेंगे
पहले ide का संस्थापन देखते हैं
netbeans netbeans org से downloaded किया जा सकता है
यह official मुख्य site है
site के मुख्य पेज पर download link पर click करे
अगले पेज पर जो loads होता है
अंतिम column में download link पर click करें जिसमें सभी समर्थित technologies का download सम्मिलित है जो कि glassfish server के साथ ide द्वारा आवश्यक है
netbeans के संस्थापन को java development kit jdk के संस्थापन की भी आवश्यकता है जिसे java sun com से downloaded किया जा सकता है
यहाँ get java link पर click करें तथा netbeans और jdk bundle दोनों को download करने के लिए link चुनें
अगला पेज जो loads होता है
setup file चुनें जो आपके operating system के अनुकूल हो
उबुंटू पर setup file sh dot sh file के रूप में downloaded होती है
अर्थात shell script file के रूप में
terminal पर जाकर इस file को run करें
window या directory पर जाएँ जिसमें downloaded की गई setup file है और prompt पर
downloaded file के name के बाद sh type करें और enter दबाएँ
यह installer को शुरू करेगा जो कुछ समय लेगा
installer screen पर दिखाई देता है
अपने system पर ide संस्थापन के लिए आप onscreen पर दिये गए निर्देशों का अनुकरण कर सकते हैं
मैं अब installer से बाहर आऊँगा
अब netbeans window पर देखें
अपने उबुंटू operating system पर netbeans launch या खोलने के लिए
menu item applications programmings पर जाएँ और netbeans ide icon पर click करें
जब आप पहले ide launch करते हैं तो यह netbeans start पेज खोलता है
ide window में शामिल हैं
menu bar में menus
toolbars और
workspaces जैसे file system window
रनटाइम विंडो और
आउटपुट विंडो
main menu आपके प्रोजेक्ट्स को बनाने एडिट करने कंपाइल करने रन करने और डिबग करने के साथ ही
netbeans का उपयोग करने के लिए आवश्यक कमांड्स प्रदान करता है
tool bar जो कि menu bar के नीचे है menu bar पर उपयोगित कई लगातार commands के लिए buttons प्रदान करता है
workspace windows का संग्रह है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के operations करने के लिए किया जाता है
जैसे workspace window में editing निष्पादन output या debugging जो workspace के नीचे उपस्थित है
फिर एक सेम्पल java project बनाते हैं
java project बनाने के लिए file menu पर जाएँ new project पर click करें
categories के नीचे new project wizard box में
projects में java चुनें java applications चुनें और next पर click करें
wizard के name और location पेज में
keyboardreader के रूप में अपने project का name दें
चयनित set as main project चेकबॉक्स set करें और
finish click करें
project बन गया है और ide में खुला है
एक बार project बन गया तो आप projects window को ide windows के बायें तरफ देखने में सक्षम होंगे
जिसमें आपके code पर आधारित source files libraries सहित project के घटकों का tree view शामिल है
keyboardreader java नामक file के साथ दाईं ओर पर source editor खुला है
अब main class में एक सेम्पल java code प्रविष्ट करें
यह code keyboard से input रीढ़ करता है और एक output दर्शाता है यदि input पूर्ण संख्या या floating प्वॉइंट संख्या है
अब मैं इस code को अपने clipboard पर कॉपी कर रहा हूँ और ide workspace में मौजूदा code पर पेस्ट कर रहा हूँ
अगला step है हमारे project को रन करना
netbeans ide पर किसी भी project को रन करने के लिए यहाँ 3 विधियाँ हैं
पहली विधि है आप project window में project node पर click कर सकते हैं औऱ contextual menu से run run सकते हैं
या आप toolbar पर जा सकते हैं और run project button पर click कर सकते हैं
या आप अपने keyboard पर project को रन करने के लिए f6 key भी दबा सकते हैं
मैं project node पर right click करता run और run विकल्प चुनता run
जब आप java application रन करते हैं ide application code को बनाता और compiles करता है और program को output window में रन करता है जो workspace के नीचे दिखाई देता है
ide अब मुझसे कोई भी संख्या प्रविष्ट करने के लिए कहता है
मैं एक यादृच्छिक संख्या प्रविष्ट करता हूँ औऱ enter दबाता हूँ
यह कहता है कि input पूर्ण संख्या है या floating प्वॉइंट संख्या
अब नियत कार्य
keyboardinputreader project के लिए extension रूप में
अन्य project को परिवर्तित करें अर्थात एक टैम्परेचर converter application जो एक इनुपट टैम्परेचर लेकर
celsius से fahrenheit में और इसके विपरीत में परिवर्तित करें
और output window में परिवर्तित टैम्परेचर प्रदर्शित करें
मैंने पहले ही ऩियत कार्य बनाया लिया है
नियत कार्य को रन करें
program output window में मुझसे input टैम्परेचर प्रविष्ट करने के लिए कहता है
मैं fahrenheit में सेम्पल टैम्परेचर40 प्रविष्ट करता हूँ और यह मुझे celsius में परिवर्तित टैम्परेचर दिखाता है
screen पर प्रदर्शित link पर उपलब्ध video देखें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
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करके भी देख सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद